जो कलर है ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है। जमीन ब्लैक एंड वाइट दिख रही है। पिक्चर का क्वालिटी पूरा ब्लैक एंड वाइट है जो सुन्दर लग रहा है देखने में अच्छा लग रहा है।

बहोत जगह है। पानी है हरियाली है। हर जगह हरे-हरे दिखाई दे रहा है। पूरी जगह पर बिजली दिखाई दे रही है। आसमान भी कई कलर का दिखाई दे रहा है।

बहौत खूबसूरत लग रहा है कुछ पौधे हैं जो छोटे-छोटे-छोटे-छोटे पड़े हुए हैं और पानी की गहराई बहौत ज्यादा दिखाई दे रही है।

इधर महादेव का मंदिर है। मंदिर के अंदर --

जो बच्चे हैं जो स्कूल ड्रेस पहने हुए हैं। पैंटशूज --

हरियाली बहोत सारे पेड़-पौधे आस-पास कुछ भी नहीं है बहोत सुन्दर नजारा दृश्य दिख रहा है।

ये कुछ कुर्सी कुर्सीयाँ खाली हैं। सामने में नेहरू जी की तस्वीर है। थाना का नाम --

ये मछली मंडी है। यहाँ बोहोत सारे मछलियां दिख रही हैं। कुछ व्यक्ति जो मुँह लगा के बैठे हुए हैं। सारी मछलियाँ मरी हुई हैं। पीछे बरफ का ठेला भी दिखाई दे रहा है।

और कुछ व्यक्ति मछली को बेच रहे हैं। कुछ व्यक्ति खरीद रहे हैं। एक व्यक्ति जो है ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन के बैठा हुआ है।

लिखा हुआ है। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है। एक डोर मेट बिछा हुआ है। पूरा कांच का फिनिसिंग जो दिखने मे बोहोत ही अच्छा लग रहा है।

मस्जिद सा लग रहा है। मस्जिद के ऊपर गुम्बज बना हुआ है जो सफेद और ग्रीन कलर का है। आस-पास पेड़ हैं। मस्जिद के आस-पास कोई नहीं हैं जो सीढियाँ ऊपर तरफ जा रही है --

जहाँ चेयर तो है पर आस-पास कोई बैठती नहीं है। सामने में थम्स उप माज़ा का बोतल दिखाई दे रहा है।

पूरा खाली है। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आसमान पूरा सफ़ेद है। बड़े-बड़े पेड़ छोटे-छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। सामने --

ये गाय की तस्वीर है। गाय काले रंग की है जो घास खा रही है जो हरे रंग की है। गाय की एक आँख दिखाई दे रही है। रस्सी भी है।